बच्चों वाली चेयर्स टाइम टेबल्स रखी हुई है सामने कुछ --

दीवालों का रंग पीला है और नीचे बॉर्डर लाल रंग का है।

जो कि पूले पीले और लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं .

और यहां पे साइड में एक हरे रंग का डस्ट बिन रखा हुआ है .

इस फोटो में एक पैंग की फोटो दिखा लगा दिखाई गई है .

साइड में दो-चार लड़के--

फोटो में एक दुकान दिखाई गई है जिसमें --

और सामने वाले सोफे पे संगीत के यंत्र रखे हुए हैं जिसमें ढोलक तबला और गिटार है .

जिसमें एक बेड पड़ा हुआ है उसकी चादर सफेद रंग की है लेकिन वो सिमटी हुई है।

टी-शर्ट पहने हुए हैं एक पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए --

झोपड़ी नुमा एक अ घास का बना हुआ बनाया गया है .

रूम दिखाया गया है इसमें एक सिंगल पेट पड़ा हुआ है साइड में--